लीची है और और इसे लोग --

अप्रैल-मई के महीने मे ये मिलते है।

समय व्यतीत करते है मनोरंजन करते है।

यहाँ पे लोग आते है क्रिकेट खेलने ।

यह एक छोटा सा नास्ते की दुकान है और इस दुकान में बोहोत प्रकार चीजें मिलती है। समोसा जलेबी मिठाईयां रसगुल्ले।

एक पार्क है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते है और इस पार्क मे घूमने मे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे लोग आते है घूमते है और अपना समय व्यतीत करते है।

बोहोत ही कम दामों में इस इस गैरेज में बोहोत होती है।